और इस घर में रखा है क्लस्टर है क्लस्टर घर मे रखा हुआ है अच्छा से आलू और आलू --

यहाँ पे बाल काटा जाता है आईब्रो बना जाता है।

और हरा-भरा घांस भी है। एक आदमी बैठा है। उधर पेड़ भी है एक आदमी बैठा है मछली पकड़ रहा है। बैठ के मछली पकड़ रहा है। उस आदमी ने --